अ- घास उगी हुई नजर आ रही है। एक साइकिल खड़ी हुई है। आ- कुछ बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है। अ- खंभे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इमेज में एक खाली रूम नजर आ रहा है। रूम में खिड़की बनी हुई है। खिड़की पर जालीयां लगी है। सामने की तरफ दिवार पर --

आ दो बैनर लगे हुए हैं | एक फ्रेम लगी है | आ ट्यूब लाइट जलती हुई दिखाई दे रही हैं | पंखा लगा हुआ नजर आ रहा है |

आ सभी लेडीजों के माथे पर आ सिन्दूर से लम्बा टिका लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इमेज में एक क्रोस का निशान बना दिखाई दे रहा है जीसस की मूर्ति लगी हुई है | आ दो फ्लावर पोर्ट रखे हुए नजर आ रहे हैं |

इमेज में एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है। अ घर के बाहर एक गाय खड़ी हुई नजर आ रही है। एक खंभा लगा है।

खम्बे पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है एक बोर्ड लगा है बोर्ड पर अवागढ़ लिखा हुआ है।

आ- दिए जलते हुए नजर आ रहे हैं। आ- मन्दिरों पर कलरफूल पेंटिंग बनाई हुई है। आ- बोर्ड रखे हुए नजर आ रहे हैं।

आ पेड़ पोधे लगे हुए दिख रहे हैं | अ पौधों पर फूल लगे हुए नजर आ रहे हैं |